इस चित्र में एक व्यक्ति सफ़ेद कमीज़ और रंग की पैंट पहने खड़ा है।

सामने ही हमें कई सारी विभिन्न रंगों की मंदिरे नजर आती है जैसे कि नारंगी हरी सफेद--

और दो-तीन लकड़ी की रेक्स है जिसमें की कई सारी रोजाना इस्तेमाल की चीजें से मिल रही है और एक मेज है जिसमें की चित्र रखा हुआ है।

एक पक्की सड़क है जिसमें की एक बालक लाल रंग की कमीज पढ़ने हुए खड़ा है।

चित्र में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो कि चाय पी रहा है।

पुरुष ने भूरे रंग की स्वेटर पहन रखी है पुरुष के पीछे ही एक कमरा है ।

जिसमें की कई सारे महिलाएं और पुरुष खड़े और बैठे हुए हैं। कमरे में कई सारे लाइटे भी लगी हुई हैं।

स्त्री शायद पूजा दे रही है बीच-बीच में पत्थरों की एक मूर्ति भी बनाई गई है जिसका कि रंग सफेद और नारंगी है।

चित्र में हम एक सफेद रंग की इमारत देखते हैं इमारत के सामने ही एक काली रंग की गेट है ।

चित्र में हम एक गुलाबी रंग की इमारत देखते हैं इमारत में सैकड़ों खिड़कियाँ हैं ।

दुकान के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है। दुकान के बगल में जो दीवार है उसमे एक चित्र लगा हुआ है।